नीली वाइट ब्लैक और कुछ फूल भी टंगे हुए हैं पोलिथिन में--

और ब्लैक कलर में दिख रहा है उसके बीच पानी बह रहा है साइड में लगी गार्डन सा है जिसमें पेड़ दुगो दिखाई दे रही है।

ये मैदान है इस मैदान मे पीले कलर की मिट्टी दिखाई दे रही है सामने रोड है उस रोड के साइड मे मकान है इसमे इसमे बडा-सा गेट लगा है ।

एक ब्लू कलर का साइड मे और बिल्डिंगे बन रही है एक डी.पी. रखी हुई है ।

यह एक दुकान हैं इसमें गाड़ी बाइक साइकिल की ट्यूब दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे टायर रखे हैं लाइन से जमे हुए हैं और एक मशीन रखी हैं।

कुछ एक बा बाइक खड़ी है बाहर बाल्टियां रखी है।